यहाँ कोई त्योहार पर लगने वाले मेले में ऐसे झूले जरूर देखते होंगे।

गौतम बुद्ध हमारे देश के एक --

उसे अच्छे से डिज़ाइन करेगा।

यह एक कारालय है।

एक व्यक्ति के पीठ के दर्द की --

लेंटर के लिए उन्होंने काफी सारे पटले बिछाएं हैं।

दुकाने लगती हैं जैसे खिलोने की।

यहाँ पर डांस के प्रैक्टिस की जा रही है।

यह एक प्लेयर ग्राउन्ड है।

का नाम सुपर गोल्ड --

जोकि पेट्रोल और डीजल के रूप में हमें मिलता है।